इस शोरूम में कई तरह के कपड़े को सजाया गया है जैसे --

यहाँ एक चित्र है और इस् चित्र में एक माँ सरस्वती की मूर्ति दिखाई दे रही है जिसमें सभी लोग --

इस दोनों छोर से एक लोहे की पुल बनाया गया है और इस नदी में कई सारे --

यह एक चित्र है औड् इस चित्र में एक नदी के ऊपर एक नाव चलती हुई दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग मे कई तरह के खेल किया है जिसमे सभी खिड़कियां --

पहनने वाले टी शर्ट और जींस भी है और बच्चे के पहनने वाले फ़्राक भी है।

इसके ऊपर कुछ पोस्टर और बैनर भी लगे हुए हैं जिसमें यु.पी.एस.सी नोट्स इग्नू बुक लिखा हुआ है।

एक माता रानी का मंदिर है और इस मंदिर के चारो ओड एक बरा सा टाइल्स लगी हुई न् घर बनाया गया --

इस बुक सेंटर का नाम आरती बुक सेंटर है और इस दुकान में बोहोत सारी किताबें रखी गई है जिसमे कुछ किताबे बाहर रखी --

कारखाना दिखाई दे रहा है। इस कारखाने में एक लोग अंदर की ओर दिखाई दे रहे हैं।

इस कॉलेज के अंदर दो पेड़-पौधे --

इसमें कुछ शोरूम का नाम सेल्स एण्ड यूज्ड --

इस गार्डन के दोनों ओर हरे-हरे बड़े-बड़े वृक्ष भी लगाए गए हैं और कुछ वृक्ष का रंग --